यहां एक बड्डे पार्टी है यहां पे दो बच्चे नाच रहे हैं दोनों ने सेम कपड़े पहन रखे हैं नीचे वाइट और ब्लैक टाई लगी हुई है।

यहां पे सोने की मूर्तियां भी बनी हुई है और यहां पे ग्रीन और गोल्डन कलर की कढ़ाई भी की हुई है।

यहां पे सूरज भी दिख रहा है और नीचे पानी में इतना ऐसा चमक रहा है सूरज जैसे की पानी में आग लगी हुई है।

यहां और कोई दिखाई नहीं दे रहा है यहां पे तेल और ऑयल की कोल्ड ड्रिंक की बोतल--

और यह घर भी पिंक कलर का दिखाई दे रहा है आसपास भी एक टायर लगी हुई है।

यहां पे पेंसिल रबर शोपनर भी रखे हुए हैं और यहां ज्योमेट्री बॉक्स भी है।

और ग्रीन कलर की मशीन के पाइप लगा हुआ है।

यह एक किताब की दुकान है यह लकी बुक सेंटर है यहां पे हर तरीके की गवर्नमेंट जॉब की किताबें भी मिलती है।

जो ब्राउन कलर की दिख रही है पहाड़ एकदम ग्रे कलर का दिख रहा है।

यहां पे बहुत सारे टेबल रखी हुई है टेबलों के पास चेयर रखी हुई है यह किसी रेस्टोरेंट जैसा लग रहा है।

पैर बैग भी रखा हुआ है और यहां कोई लड़का या जेंट्स नहीं दिखाई दे रहा है ना ही कोई कस्टमर दिखाई दे रहा है।

यहां पे एक हवा भरने वाला भी रखा हुआ है पास मे एक व्हाइट कलर की वेंटो भी निकली हुई है।

जो एक फेयरवेल पर डांस कर रही है इसने मेहंदी कलर ग्रे कलर की मिक्सअप साड़ी पहन रखी है।

यह एक स्कूल की फोटो है यह एक सीमेंट कलर की बनी हुई है आगे की बनी भी रही है पूरी तरीके से।

क्रॉसिंग में जा रही है एक पेड़ भी बना हुआ है यहां पे पोस्टर लगा हुआ है वह ग्रीन कलर के पास एक पोस्टर टेम्पलेट और भी रखा हुआ है।